फस गया है बीच में और इसके पीछे सुखी घास दिखाई दे रही है और मिट्टी के बीच में एक डा लकड़ी दिखाई दे रही है।

एक फल की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें की बहुत सारी टोकरियाँ रखी हुई हैं उन टोकरियों में विभिन्न प्रकार के अलग-अलग फल रखे हुए हैं।

इसमें काले अंगूर रखे हैं हरे अंगूर रखे हैं संतरे रखे हैं अनार रखे हैं एप्पल रखे हैं केले रखे हैं पपीता रखा है।

बहुत सारी बोरियो मे अलग-अलग तरह की सब्जियों की दुकाने लगी हुई है सब्जिया बेचने वाली बैठी हुई है।

लगातार तीन मंदिरों की गुंबदे दिखाई दे रही है मंदिरों की गुंबद पर अ झंडे दिखाई दे रहे हैं।

भी बिछी हुई है बहुत सारे मजदुर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

फर्श पर पुरे में पत्थर लगे हुए हैं पत्थर पर बहुत सारी दरी बिछी हुई हैं उस दरी के उपर बहुत सारे लोग नारंगी कलर के वस्त्रों पर बैठकर योगासन कर रहें हैं।

और तीन ट्रेडमील की मशीन दिख रखी हैं।

तरबूज रखा है नीचे की तरफ ऑरेंज कलर की बास्केट रखी है एक स्टील की बाल्टी रखी है।

और ऊपर की तरफ पुरे में लकड़ियां बिछी हुई है और इस --

स्टेज बना है स्टेज पूरा नीले कलर के पर्दो से सजा है।